यहाँ पे एक कपड़े की शॉप है और कपड़े की शॉप में कुछ बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं कुछ बड़ो के कपड़े रखे हुए है और पीछे कबर्ड बनी हुए है उसमें कपड़े रखे हुए हैएक डमी है जो की लड़के का डमी बना हुआ है जे --

कुछ मैदान पड़ा हुआ है चारो तरफ अ-- फ-- और म-- कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं कुछ लाईट लैम्प वगेरा लगे हुए हैं।

पाथ बना हुआ है जिसपे से लोग वॉक करते हैं और एक स्टेयर एक चेयर बनी हुई है जो की पत्थर की बनी हुई है।

कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई है और अ ए प्लेट में कुछ राइस वगैरा रखे हुए हैचावल रखे हुए है दो प्लेट्स में राइस रखे हैऔर प्लेट्स --

छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं और कुछ दो बच्चे तीन बच्चे खड़े हुए है अ लड़के लोग खड़े हुए --

कुछ चॉकलेट रखी हुई है केक के ऊपर चॉकलेट लगी है।

जेन्ट्स वगहरा है लेडिज भी है लेकिन जेंट्स ज्यादातर जेन्ट्स है और जो अपने हाथ मैं कुछ रेखे हुए है। और

और लेडीजो ने कुछ हाथ में कुछ अ रख रखे हुए है और उन्हें अपने सिर पे कुछ कुछ पहना हुआ--

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। जो कि बड़ी सी बिल्डिंग है। व्हाइट और रेड कलर की और उसकी जो बाउंड्री है बिल्डिंग की वो ब्लू कलर की है। और बाउंड्री --